पीछे एक बड़ा सा स्कूल दिख रहा है।

यह एक मैरिज चल रही है।

कुछ डेकोरेशन भी किया हुआ है।

तार बहोत ज्यादा टूटी हुई दिख रही है।